जो एक और कार को ठीक कर रहे हैं रिपेयर कर रहे हैं।

इस पिक्चर को देखकर ये लग रहा है क्योंकि यहां सामने लिखा है क्लासरूम --

यहां पर काफी ये कस्टमर्स भी बैठे हैं जो कि कॉफी पी रहे हैं और सामने एक अंकल खड़े हैं उन्होंने डोर ओपन किया गया--

ये दिख रहा है गेट ओपन है सामने से धूप दिख रही है वेदर और पहाड़ है।

इलेक्ट्रॉनिक शॉप है जहां ई रिक्शा है सामने जो दिखाई दे रहा है।

सेल्फी ले रही है और एक ने विक्ट्री का साइन बनाया है।

काफी लंबा एक दम क्लीन रास्ता है।